इसमें मोटरसाइकिल दिख रही है। आदमी दिख रहे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमें घास दिख रही है गाड़ी दिख रही हैं आदमी दिख रहा है।

इसमें मोटर साईकिलें दिख रही हैं। ऑटो दिख रहा है। आदमी दिख रहा है। लाइट के तार दिख रहे हैं।